स एक आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ पड़ रहा ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई दिखाई दे रही है साइकल्स खड़े है बाइक खड़ी हुई नज़र आ र--